ऊपर एक अनमोल जहां दही घी पनीर मिलता है बैनर लगा हुआ है।

सामने एक फार्म हाउस में कुछ महिलाएं और पुरुष दिख रहे--